रहे है मुझे इस फोटो में--

मुझे इस फोटो में कुर्सी दिखाई दे रही--

फोटो में एक लड़का दिखाई--

एक मूर्ति दिखाई दे रही है।

फोटो में एक स्टेज दिखाई--